आप देख सकते हैं यहाँ सामने एक ग्राउंड है। ग्राउंड के तरफ घर बनी हुई है।

पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। पास में बैठने के लिए टेबल रखी हुई है और गाड़ी रखी हुई है साईकल --

एक घड़ी भी रखी हुई है और यहाँ पर उसने लोअर टी शर्ट पहने हुए हैं।

आप देख रहे हैं यहाँ एक नाव दिख रही है जोकि तालाब में है और उसे एक नवईये चला रहे हैं।

तीनो डांस कर रही है।

आप देख सकते है ये एक कॉलोनी दिख रही है यहाँ पर दो घर वाइट कलर से पेंट किए गए हैं और एक घर को हरे सफ़ेद और पीले और पिंक कलर से पेंट किया गया है।